कुछ पौधे लगे हैं जिनमें पीले रंग के फूल है आस पास लाल रंग के फूल लगे हुए दिखाई दे रहे है।

बहोत सी लाइट जल रही हैं यहां पर जिम मशीन रखी हुई दिखाई दे रही हैं सामने एक शीशा लगा हुआ है।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

उसके अंदर एक हवन जैसा हवन का कुंड जैसा बना हुआ है उसमें बहुत सारी लड़कियां बनी हुई है।

यहां पे एक बस है उस बस उस बस का कलर बोहोत हल्का गंदा गंदा सा है।

जो ग्रील लगी हुई है वो पाइपे है वो है हरे कलर की।

यहाँ पे एक बहोत बड़ा रूम है उस रूम में बहोत सारी बेड पड़े हुए हैं।

यहां पे एक झूला जैसा है उस झूले में कुर्सियां जैसी निकली हुई है वो वो भी जंजीर से बंधी हुई है ऊपर से।